ऐसा रंग बिरंगा फंक्शन दिखा है और फंक्शन के--

जे_सी_बी भी खड़ा है और ऊपर आसमान--

मुझे इस चित्र की दुकान में हमको--

चित्र में एक मॉल का दुकान दिखा है जिसके--

बीचों बीच दरवाजे पर कांच लगा है और व्यक्ति बीच में--

खड़ा है किनारे किनारे मॉल का--

बहोत सा लोग बैठा है जो--

और लोग शूज ले रहा है।

मुझे इस चित्र में एक दुकान दिखा है।

मुझे हमको यहां एक चित्र में--

नीला भी दिखा है और एक कथा कलर भी है।

बगीचे को सीचा है और फिर से आसमान सफा है और--

मुझे यहां एक पर्वत दिखा है।

का कलर सफेद दिखा है और कुछ लोग खड़ा है।

कार का शोरूम भी दिखा है और--

इस चित्र में हमको एक चित्र ऐसा दिखा है।

जो किसी मैदान का चित्र लग रहा है और--